हम देख सकते हैं यहां पे कितनी हरियाली है और कितनी साफ सुथरे जगह पे ये घर बना हुआ है ये हमें दर्शाता है कि हमें कैसे पर्यावरण से जुड़ के रहना चाहिए ।

और वहा पे एक लड़का खड़ा होके नजारे देख रहा है खुले आसमानो में और ये कोई ऊचाई आस्थान है।

और इस फोटोज में हमें दिखाया जा रहा है कि समुद्र के किनारे पानी कैसे आता है।

कोई प्रोजेक्ट कम सबमिट कर रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं जिसे कि ये सब बना रहे हैं।

पढ़ने से तो नाम यह लग रहा है कि ये कोई कोचिंग क्लास है जिस पे बच्चे पढ़ने आएंगे।

अगल बगल शांति और खुला प्लेस है मैदान में एक झंडा लगा है।

ये देखने में तो एक घर दिख रहा है और बना भी काफी खूबसूरत सा है।

और अगल बगल बहुत सारे सुंदर वृक्ष है जो की जो फूल के वृक्ष है जिसपे की फूल है।

उनका आशीर्वाद लेने आए मां का देखो कितने सारे नवो देवी दुर्गा और सभी भगवानों की पिक्चर्स कितने अच्छे से रखी गई है ।

और जब जाती गर्मी पड़ती है तो आते हैं ऐसी जगह पे जहां की शांति --

शांतता महसूस होती है और मन को भी काफी अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है स्केटिंग करने में --

परफॉर्मेंस हो रहा है जिसमें कि बच्चे भरत नाट्यम और --

अपने देश के शान तिंरगे के साथ अपने डास डांस के साथ संसाधन कर रहे स्टेज मंच पर --

अ बेडरूम हुई है ये बेडरूम में एक कबाड़ है और कबाड़ के बगल में दो पानी के बोटल और एक थर्मस रख --

कुल पांच बस खड़ी है और कई सारे मनुष्य खड़े हैं दो अंतिया है और जो कि बैग उठाकर शायद अपने घर जा रही है ।

तो देखो देखने में एक ये उड़ी गोवा लग रहा है उड़ी गोवा का मतलब होता है कि ये एक --

ये खाने पीने के सामान है शैंपू है कंडीशनर है हेयर डाई --

लोग इसके आगे ना जाए और यह बस स्टॉप है जहां की छह से सात बस खड़ी है ।

और यह मगरमच्छ काले कलर का है जो कि इसकी हालत काफी खराब दिख रही है देखने में ।

डॉक्टर अंकल सबको पर्ची पे उनकी टेबलेट और दवा उनकी बीमारी का रोग का दवा दे रहे हैं और बता रहे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है ।

पर जमा होता है अगर ये टैंक छूट जाए तो ना जाने कितने घर नाले नदियां डूब जाए ।